उसी के पास एक मशीन खड़ी नजर आ रही है।

और कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

जिसकी दीवार के ऊपर जोगा लाइफ --

लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

कॉलोनी के पास कुछ बैठने के लिए बेंच से लगे हुए हैं और उनके ऊपर लाल रंग--

जिसके अंदर कुछ मोटरसाइकिल और गाड़ियों के टायर --

और दो कुर्सियां भी रखी दिखाई दे रही हैं।

सफेद जामनी गुलाबी रंग है।

जिओ का दफ्तर दिखाई दे रहा है।

और ये एक बड़ा सा पेड़ दरवाजे के पास--

और एक रिक्शा के पास एक आदमी खड़ा है।

यहां पर हमें एक पुरानी इमारत--

पड़ी हुई है उसके अंदर कुछ चीजें--

कुर्सी के पास एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें एक समुंदर दिखाई दे रहा है।

और कुछ ही दूरी पर बहोत से बड़े--

और कुछ पहाड़ियां नजर आ रही हैं।

उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पाए--

और दुकान के अंदर बहुत सी पुस्तके रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

और एक टंकी के ऊपर एक लड़का बैठा दिखाई दे रहा है।